यहाँ जिम है यहाँ बोहुत ही बड़ी जिम है और यहाँ पर बोहुत सारी जिम की --

यह दो व्यक्ति रोलर से इसको पोत रहे हैं और साइड में भी बहुत सारे घर बने हुए हैं।